दुकान के अंदर डस्टबिन भी रखा हुआ है और खाने के बाद हम वहां फेंक सकते हैं।

सामने कैडबरी का बहुत बड़ा फ्रिजर लगा हुआ है।

यहां बहुत सारे भीड दिखाई दे रही है।

पीछे बाइक पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

उसके पीछे एक टावर भी खड़ा है।

एक बिल्डिंग में अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ दिन पहले ही ढलाई किया गया है।

यहां एक बहुत बड़ा झरना है।

यहा बहुत सारे भक्त पूजा करने के लिए आए हुए हैं।

इसके पीछे सीमेंट भी बहुत सारा रखा हुआ है।

मंदिर के पीछे बहुत सारे बिल्डिंगें हैं।

सामने बहुत ही अच्छा दृश्य है यहां पे एक बहुत बड़ा लाइट भी लगा हुआ है जैसे सभी को दिखाई दे।

ग्रीन कलर के सामने एक पेड़ भी है जिसका बस डाली दिखाई दे रहा है।

यहां एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है एक वाइट पेज में एक पिंक पेज में और एक येलो पेज में लिखा हुआ है।

दुकान के अंदर बहुत सारे कस्टमर बैठे हुए हैं।

कुर्सी दिखाई दे रहा है रेड कलर का उसके बगल में एक घर है शिव शंकर भवन।